ये एक पेट्रोल पंप है यह रात हो रही है एक ट्रक खड़ा हुआ है येलो कलर का एक चेयर रखी हुई है इसपे थरमस रखा हुआ है।

पेंट यहाँ पे बहुत सारे बल्ब लटक रहे हैं ऊपर से और यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं दीवार पे टेबल पे ग्लास रखा हुआ है बोतल रखी हैं मेनू रखा हुआ है टेबल पर।

ये एक पार्क है यहाँ पर टेबल्स लग रही हैं येलो कलर की ग्रीन कलर की और पेड़ यहाँ पर सूखे खड़े हुए है।

एक्सरसाईज कर रहे हैं यहाँ पर ट्रॉली रखी हुई है घास काटने की मशीन भी रखी हुई है यहाँ पर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।